पीछे नीला कलर का कुछ दिख रहा है।

ऊपर एक ए_सी भी दिख रहा है और लाइटें भी रही--

जिसका नाम हेमा बुक वर्ल्ड लिखा दिखाई दे रहा है।

एक बाइक भी दिख रही है।

यह बिल्डिंग के बाहर एक लाल कलर का डिब्बा भी दिख रहा है।

यह बिल्डिंग में एक ऊपर बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है।

एक प्लेट भी दिखाई दे रही है।

यह एक कावेरी थिएटर दिख रही हैं।

यहां पे ब बगल में कुछ बुक माई शो लिखा दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ बैग भी दिख रही हैं उस तरफ कुछ लोग चलते हुए दिख रहे हैं।

यहां पे एक पार्किंग लॉट दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है जो सफेद लूंगी और सफेद शर्ट पहने दिख रहा है।

पीछे एक हरा पेड़ दिख रहा है।

दो शु और टाइ पहने दिखाई दे रहे है।

कोई लोग बैठे दिखाई दे रहे है कोई खड़े दिखाई दे रहे है।

यहां पे एक डॉक्टर पलंग के ऊपर बैठे एक बच्चे को कुछ बोल रहा है।

यह एक मस्जिद दिख रहा है।

ऊपर एक लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक कॉलेज की बिल्डिंग है जिसका नाम सुराना कॉलेज लिखा दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर कुछ चीजे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दोनों फोटो खींचा रहे हैं।

अंदर दो आदमी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की तरफ कुछ सैसेज लटकाए हुए दिख रहे हैं।

बहुत सारी किताबें शेल्फ के अंदर जमाई हुई दिख रही हैं।

यहां पे कुछ टंगाया हुआ भी दिख रहा हैं।

यहां बैट सब अ काला कलर रैक के अंदर डाला हुआ दिख रहा है।

यह एक का शादी का स्टेज दिख रहा है यहां पे एक सोफा रखा हुआ दिख रहा है।

ऊपर नीला कलर का आसमान दिख रहा है।

वहां पर एक सफेद कलर की एक्टिवा भी दिखाई दे रही है।

पीछे एक रेड कलर का कुछ रखा दिखाई दे रहा है।

यहां पे दो आदमी बाहर बैठके कुछ किताबें बेच रहे है।